ये बुक की स्टोर हैं यहा पे एक लड़का खरा हुआ हैं यहा पे बहोत सारी बुक्स बंडल्स मे रखी गई हैं कुछ पीछे भी बुक्स रखी गई हैं।

यहाँ पे ग्रिल है। बहोत सारी बिल्डिंग्स हैं। एक तावल लगा हुआ है। ये शाम का समय है। यहाँ पे दुकान है। एक रास्ता गया हुआ है। बहोत सारे घर --

दो लोग फ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं उने शर्ट पैंट पहना हुआ है एक ने ब्लेजर पैंट पेहना हुआ है।

ये मछली बाजार की फोटो है यहां पर लोग मछली काट रहे हैं कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं यहां पीछे साइकिल खड़ी हुई है यहां पे लोग आ जा रहे हैं यहां पे लोग मछली को काट रहे है ।

उसने स्वेटर पहनी हुई है। लड़के ने उसने नीली कलर की सर्ट पहनी हुई है। वो फोटो खींच रहा है।

ये एक फंक्शन की फोटो है। यहाँ पर एक लड़की डान्स कर रही है। उसमे स्टेज मे बहुत सारी डिस्को लाइटस लगी है। यहाँ पे बहुत सारे इंसान बैठे --

हुए हैं कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं यहां पे कुछ लोगों ने टोपा लगाकर बैठे हैं ये रात के मोहोल की फोटो है।

यहाँ पे बहोत सारे लोग बैठे हुएँ हैं। यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे एक इंसान खड़े होके स्पीच दे रहे हैं। यहाँ पे बहोत सारे लोग बैठे हुएँ हैं। कुछ चेयर्स रखीं गयीं है।

यहाँ पे नदी है पेड़ पौधे लगे हुए --